से ढका हुआ है पूरा पीछे का बैक का कुछ नहीं दिख रहा है इतने सारे पेड़ है नीचे फर्श पे घास--

और यहां पर कमरे में दरवाजे लगे हुए हैं यहां पर बाहर एक चेयर टाइप की पड़ी है यहां पर एक मशीन पड़ी हुई है।

शॉप है इसमें बहुत सारी मूर्ति रखी है।

यहां पर म्यूजिक सिस्टम रखे हुए हैं कोई भी है रूम में है नहीं एक ब्राउन कलर का बैग है।

डेरी मिल चॉकोलेट लगी है बहुत सारी फ्लेवर की चॉकलेट लगी है बिस्किट लगे है।

डेकोरेट करके चॉकलेट केक बनाया गया है बहुत सुंदर लग रहा है।

टाइप की लगी है बीच में एक मेस टाइप की है।

उसके हाथ में एक डब्बा है ग्रीन कलर का उसमें कोई घोल रखा है।

एक यहां पर एक बड़ी सी दीवार है वो बहुत सारे ईंटों के टुकड़ों से बनी हुई है।

कुछ रखा है और पीछे एक बैग में बहुत सारा पेड़ है।

मौसम बहुत ब्लू-ब्लू हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है पीछे मिट्टी का डेर लगा हुआ है।

लड़कियां निकली है बाहर एक मोबाइल रखा हुआ है।

ये एक मालाओं की शॉप है इस पे एक औरत बैठी है लेडी जिसने वाइट येलो कलर --

इसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा उसने जैकेट पहना है ब्लैक कलर का--